निरपथ दिख रही है सड़क के किनारे एक शोरूम दिखी है शोरूम काफी सुंदर लग रहा है। शोरूम के आगे एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है।

बाइक हीरो शोरूम लिखा हुआ है हीरो होंडा का शोरूम नजर आ रहा है आगे बाहर बाइक लगी हुई है इसके भीतर काफी सुंदर सजावट की गई है इसके भीतर बाइक स्कूटी नजर आ रही है जो बहुत प्रकार की दिख रही है।

बिल्डिंग के अंदर अंदर गाड़ियों का शोरूम नजर आ रहा है जिसके बाहर एक बड़ा सारा बोर्ड लगा हो रहा जो टाटा शोरूम लिखा हुआ है इ टाटा गाड़ियों का शोरूम है इसके बाहर बहुत सारी गाड़ी भी लगी हुई नजर आ रही इसके कुछ बाइक भी लगे नजर आ रहे है।